यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है सामने ही उनकी कुछ ट्रॉफी रखी हुई है और कुछ लोग भी सामने दिखाई दे रहे है।